और भी बहोत सारा सामान है।

बहुत सारी विंडोज है और फर्श एकदम चमक रहा है।

यहां पे म्यूजिक क्लास चल रही है शायद--

और आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे हैं।

ये मुझे किसी लग्जरी रेस्टोरेंट जैसा लग रहा है जहां पे--

देखने में एक दम मस्त लग रहा है जो की--

बिल्डिंग का नाम ऑनफूड्स है।

और इनकी दुकान पे सारी चीजे है।

नीचे ग्रीन कलर की टाइट पट्टी बिछी हुई है और बैकग्राउंड में--

मुझे यहां पे बैंक ऑफ़ बड़ोदा नजर आ रहा है।

और बैकग्राउंड में दो दो गाड़ियां दिख रही हैं और कुछ बच्चियां दिख रही हैं।

यहां पे कुछ तो एक दम अच्छा सा मुझे नजर आ रहा हैं पर ये क्या है?

यहां पे मुझे एक मस्जिद दिख रा--

ये एक छोटी पहाड़ी है।